और पास में ही है जो रेड कलर की चेअर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उधर भी कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो यहाँ झंडे लगे हुए हैं।

पिक्चर मे चर्च है जहा पर पीछे प्लस का निशान है और एक कुछ अंकल जी और कुछ लेडिज यहा खड़ी हुई है और यहाँ कुछ व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है। एक--

और एक अह ऊपर पहाडी इलाका दिख रहा और ऊपर-- आसमान दिख रहा है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है और नीचे पाणी अच्छ सुंदर है।

क आईने के पास से अ-ह-अ-म येल्लो कलर से है वही पर कुछ बाइक भी जा रही है और वहाँ पर कुछ अ-ह खजूर के पेड़ लगे हुए--

और यहाँ मुझे एक अह घड़ी दिख रही है और कुछ लोग बैठे हुए है और यहा फर्श है ग्रीन कलर का।

ओर यहाँ एक दुकान है जहाँ पर कार्टून्स रखे हुए है बोरिया रखी हुई है और यहाँ कुछ मार्केट --

और दो लड़के है जो अह जा रहे है जो एक मेहंदी कलर की शर्ट पहने हुए है और एक पीली कलर की टीशर्ट पहने हुए है और--

और यहाँ कुछ कपड़े भी रखे हुए है अह पैन्‍ट्‌ शर्ट और पास मे एक दीवाल घड़ी टंगी हुई है जिसमे अभी समथिंग साड़े दस ब--

इस पिक्चर में एक अ-ह- घर बना हुआ आ काँच वाला है। ऊपर से व्हाइट कलर का है और ऊपर आसमान दिख रहा--

इस पिक्चर मे एक बिल्डिंग दिख रही है जो डार्क आय मिन येल्लो कलर से उसपे पेंट है।